ये बहोत सारे बल्ब जल रहे है यहाँ पर मुझे दो व्यक्ति भी दिखाई दे रहे एक व्यक्ति चल कर आ रहा है।

यहाँ पर मुझे कुछ मशीने रखी हुई दिखाई दे रही हैं कुछ मशीने बहुत ऊंची-ऊंची है।

ऐ पहाड़ी के ऊपर मुझे एक ब्लैक ब्लैक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है बादल दिखाई दे रहे है।

परदे के अन्दर स्टार वाली लाइट टंग रही है एक गर्ल्स मुझे योगा करती हुई दिखाई दे रही है।

टौर्च ही टौर्च वाली बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को देख कर लग रहा है की यह हॉस्पिटल है।

उम्म बेकरी की दुकान दिखाई दे रही है उसके अंदर केक ल--

यहाँ पर मुझे एक ऑफिस टाइप में दिखाई दे रहा है इस ऑफिस में सबके अपने-अपने अलग-अलग केबिन दिखाई दे रहे है कुछ फोटो लगे दिखाई दे रहे ।

और मुझे एक मार्केट दिखाई दे रहा है मार्केट के रोड पर मुझे कार र र अ --